लोग एकत्रित है और उसके सामने एक पर एक गेंद लिए हुए खड़ी हुई है।

इस वीडियो में एक पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के निचे --

और एक बाइक रखी हुई है उसके नीचे जमीन का रेतीली जमीन है।

उस में घास भी ऊगा हुई है हुआ है बहुत सुन्दर लग रहे हैं |